यहां पर कुछ सामने पेड़ लगे है और यहां पर आसमान में बादल भी नजर आ रहे है।

यहां पर गेंदे के फूल नजर आ रहे हैं और यहां पर गमले भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर नीचे कार खड़ी नजर आ रही है और सामने यहां कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर किताबें रखी नजर आ रही है।

यहां पर कुछ विद्यार्थी लाइन से खड़े हैं और यहां एक झंडा भी नजर आ रहा है।

यहां पर मछली र नजर आ रही है सामने यहां पर कुछ लोग भी बैठे दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक वेटिंग हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ कुर्सियां लगी नजर आ रही हैं।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

इस इमेज में सामने यहां पर एक पोल दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ लोग बात कर रहे हैं।

जहां पर कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं और यहां पर लाइट्स भी जलती हुई दिखाई दे रही हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक हाल दिखाई दे रहा है यहां पर लाइट्स का डेकोरेशन हो रहा है।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

यहां पर पैकेट्स में सामान रखा है और ऊपर यहां पर गुब्बारे नज़र आ रहे हैं।

यहां पर सामने सीढ़ी भी नजर आ रही है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक स्कूल की गैलरी दिखाई दे रही है।